और यहाँ पर कुछ टोकरे में टमाटर रखे दिखाई दे रहें हैं वहीं हम कुछ यहाँ पर गोभी आलू पत्तागोभी और व अन्य कई सारे सब्जियाँ देख पा रहें हैं देखने में ये ताजे हैं।

दृश्य में हमें एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम कुछ बसों को लाइन पे लगा हुआ देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर कुछ इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

देखने में यह जगह अच्छा लग रहा है वहीं हम बस कि ओर देखे तो बस पे हमें बस का नाम और नम्बर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ पर कई सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है साथ ही हम यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे भी देख पा रहे है देखने में यह दृश्य सुन्दर नज़र आ रहा है।

दृश्य देखने में एक पार्क का लग रहा है यहाँ पर हमें तरह-तरह के झूले दिखाई दे रहे हैं साथ ही हमे यहाँ पर बैठने को कई सारी जगह देखने को मिल रहे है।

ये दिखने में काफी मज़बूत लग रहा है किनारे की और देखे तोह हमे बोहोत सरे पेड़- पौधे देखने को मिलरहा है सुन्दर नज़र ारः है।

कंप्युटर भी रखा हुआ देखने को मिल रहा है कई सारी लाइटें भी अंदर में लगाई गई हैं देखने में यह जगह काफी अच्छा नजर आ रहा है।

दूर में भी कुछ पौधे दिखाई दे रहे है आसमान भी देखने में हमे काफी काला-काला नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बारिश होने वाली है देखने में यह दृश्य बहुत ही रोमांचक है।